नीचे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।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

पेड़ भी नजर आ रहे है।

यहां पर आस पास बहोत सारे पत्थर नजर आ रहे है।

एक दीवार नजर आ रही है और यहाँ पर हमें दो तीन चेहरे भीं नजर आ रही है।

इस फोटो में हमें एक खाली सा नजर आ रहा है यहां पर बहुत सारी चेयर और टेबल रखी हुई है।

रंग का दिखाई दे रहा है और हमें यहां पे पेड़ पौधे--

जीसके आस पास कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है।